जो कोई अच्छा कार्य करता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है ही हैं।

एक सभी लड़कियाँ सभी लड़कियाँ यो- योगा--

अदर बंद है और यह--

हमारे खाने की ले में हो रहा था।